और आसपास में कुछ चेयर भी लगी गई है समान है उनके बाजू मे एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो कि स्टूल पे बैठा हुआ है वह नीले कलर के कपड़ा पहना हुआ है ऊपर लाइट भी लगी हुई है।

यहाँ बहुत बड़ी बिल्डिंगस हैं बिल्डिंग में सफेद कलर किया गया है और कुछ हरा कलर किया गया है दरवाजा है दरवाजे के सामने दो खंभे हैं जो की बहुत मोटे-मोटे हैं।

आस-पास में जाने के लिए जगह भी है ऊपर से खंभे भी दिए गए हैंकुछ लाइटस भी लगी हुई है आस-पास में बाउंडरी भी दी गयी है।

और नीचे की साइड में पानी भी भरा हुआ है बीच में एक रास्ता दिया हुआ है सामने की ओर बिल्डिंग्स और खम्बे भी लगे गए है बिजली के तार भी लिए गए है।

यहाँ पर बहुत सरे लोग दिख रहे हैं कुछ लोग जो है आपस में चर्चा कर रहे हैं कुछ लोग मोबाइल चला रहे हैं और कुछ लोग खड़े हुए हैं कुछ लोग आजू-बाजु साइड देख रहे हैं नीचे की ओर में फ़र्श है फ़र्श में टाइल्स लगे हुए हैं।

यहाँ पर पहाड़ भी बनी हुई है आस-पास में देखने पर लग रहा की जैसे घना जंगले भी है और नीला आसमान भी है।

यह एक दुकान है दुकान में काफी प्रकार के खिलौने रखे गए हैं देखने पर लग रहा है कि ये बच्चों के खिलौनों की दुकान है। यहाँ पर काफी प्रकार की लड़कियों की डॉल्स रखी गई हैं।

यहाँ पर एक दुकान दिखाई दे रही है दुकान का दरवाजा जो है वो कांच का है उसका हैंडल जो है वो स्टील का है सामने की ओर में सीढ़ियां दी गई है और उसके ऊपर एक चटाई बनी है और आस-पास में कुछ गुलदस्ते भी दिखाई दे रहे हैं।